हमें संतरे दिख रहे हैं।

इस चित्र के अंदर हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें स्ट्रैपस भी दिख रहे है।

इस चित्र में हमें एक स्टूल भी दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक घर दिख रहा है।

और उसके पास एक बर्गर भी रखा हुआ है।

पीछे ऑरेंज कलर का फ्रिज भी है।

उसके पास में तीन सीनरियें लगी हुई हैं।

इस चित्र में आसपास पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस चित्र के अंदर हमें एक यलो कलर की बाउंड्री भी दिख रही है।

सामने कुछ छत जैसे से बने हुए हैं।

इसमें बिछम बीच में एक गोल कुछ पिलर सा बना हुआ है।

इस क्षेत्र के अंदर हमें एक बड़ा सारा दीवार के अंदर स्टार भी बना हुआ दिख रहा है।

उसके नीचे बहोत बड़े पत्थर बने हुए हैं।

एक शर्ट और एक ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है।

आस पास काफी सारी हरियाली भी है।

और कुछ चेयर्स भी दिख रही हैं।

और साथ में वाइट कलर के दो बड़े बड़े बास भी रखे हुए हैं।

उस दीवार के ऊपर काफी सारे फोटो लगे हुए हैं।

बिल्डिंग के ऊपर दो बैनर भी लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं।

आसपास बहोत सारे पर्दे डले हुए हैं।

इस चित्र के अंदर हमें बहोत सारे टॉयज दिख रहे हैं।

दो बाइक सवार दिख रहे हैं।

बहोत सारे पत्ते दिख रहे हैं।

और छोटे-छोटे गमले भी दिख रहे हैं।

और एक बैनर भी लगा हुआ है।

बाहर फुटबॉल भी टंगी हुई है।

हमें एक व्यक्ति दिख रहा है।

तीन कुत्ते भी दिख रहे हैं।

इस चित्र के अंदर--

बच्चे दिख रहे हैं।

एक नीले कलर की गैस की टंकी दिख रही है।